यह चित्र एक कपड़ो की दुकान का नजर आ रहा है जहां पर ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए कपड़े लटके हुए नजर आ रहे हैं कपड़ों का रंग रंग-बिरंगा है नीचे की ओर कुछ भूरे रंग के बक्से भी दिए हुए नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक धार्मिक यात्रा का नजर आ रहा है जहां पर अनेको भगवान की मूर्तियो को फूलों की मालाओं से सजाया हुआ नजर आ रहा है।